इस तस्वीर में एक कार का रिपेयरिंग दुकान को दिखाया गया है।

जो बगीचा बहोत खूबसूरत है।

इस तस्वीर में एक दुकान को दिखाया गया है।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

तस्वीर मे एक झोपड़ी दिखाया गया है।

जिसके चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है।